ये एक ऑफिस रूम है जिसमें नया नया सामान रखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा घर है इसमें हम रहते है बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छा भी लगता है इसमें हर अच्छे-अच्छे पौधे लगाए है।

ये छोटा सा तालाब है जिसमें चारों कोने में पेड़- पौधा है और जंगल हैं और इसमें बहुत सारा गहरा पानी है।